ये कोई अ गांव का जगह दिख रहा है जिसमें एक जेंट्स एक लेडीज है। पीछे साइकिल है और एक कुर्सी है और अ छोटे-छोटे बहुत बच्चे हैं जिसमें अ एक जेंट्स कुछ पड़ बच्चे लोग को पड़ा रहा है और एक लेडिस भी खड़े पीछे का पेड़ भी दिख रहा है।

एक लाइब्रेरी दिख रहा है जिसमें पूरा बुक्स बुक रखा हुआ है लाइब्रेरी का अंदर--

इत्ते एक मेडीकल दिख रहा है जिसमें पूरा मेडिसन दवाई रखा हुआ है जो भी अ लगता है एक पेशंट को सब चीज रखा हुआ है एक दवाई दवाई दिखाई दे रहा है पूरा अ में दवाई रखा हुआ है।

एक लॉज दिख रहा है जिसमें अ बहोत बड़ा लॉज दिख रहा है जिसमें बहोत सारा हां बैलून टंका हुआ है बैलून लगा हुआ है कुछ फंक्शन हो रहा है तो वो बैलून भी ब्ल्यू और सफेद कलर का है अ इसमें बहोत समान भी दिख रहा है और बहोत अच्छा लग रहा है अन्दर लाइट भी दिख--

स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमें पूरा अ लेडिस अ ब्याज सब लोग नहा रहा है ऊपर में बिल्डिंग भी दिख रहा है साइड में बच्चों को खिलौने भी दिख रहा है झूला भी दिख रहा बहोत जन सब नहा रहा है पानी का अंदर--